पीछे बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बंजर सी जमीन दिख रही है। और हाथी के सूंढ़ के ऊपर में बै--

बच्चे खड़े हुए है और क्रिश्चन के स्टैन्ड के साइड में एक लाल कलर का दुपट्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

ये कुछ दिख रहा ये कुछ घर जैसा दिख रहा है जिसके बाहर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

कोने पे दुकान दिख रही है जिसका शटर ऊपर है और एक शेड नजर आ रहा है और एक घर दिख रहा है।